यह एक ऑफिस है ऑफिस का कलर वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

और एक बाइक भी लगाया हुआ है।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

काउंटर में बहुत सारा कॉपी किताब भी रखा हुआ है।

और केतारी भी दिखाई दे रहा है ।

महजीद का रंग वाइट रंग से पेंट किया हुआ है।

यहां बहुत सारा पेड़ पौधा दिखाई दे रहा है।

और बहुत सारा खिड़की भी दिखाई दे रहा है।

दुकान में एक हरा रंग का शेटर लगाया हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा स्कूल है स्कूल का कलर पीला कलर से पेंट किया हुआ है।

और बहुत सारा खिड़की लगाया हुआ है।

बिल्डिंग के बाहर सिलेंडर गैस भी रखा हुआ है ।

और दुकान के बाहर बहुत सारा बाल्टी टांगा हुआ है।

यह एक बहुत बड़ा नदी है।

नदी में बहुत सारा बालू भी दिखाई दे रहा है।

दुकान मे बहुत सारा सामान रखा हुआ है।

घर में काउंटर भी लगाया हुआ है।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

बैठकर बहुत सारे आदमीन देख रहे हैं।

लाइट भी जल रहा है जो सफेद कलर का है।

रोड में बहुत सारा गाड़ी चल रहा है।

बहुत सारा घर भी दिखाई दे रहा है।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

और बहुत सारा पोल में लाइट लगाया हुआ है।

बोर्ड पर एक गाड़ी का चित्र बनाया हुआ है।

यह एक घर हैं घर में बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं।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

यह एक बहुत बड़ा घर है।

घर में बहुत सारा लाइट जल रहा है जिसका कलर सफेद रंग का है।

घर का कलर व्हाइट रंग से पेंट किया हुआ है।